यहाँ बहुत ही प्रकार के सूट सलवार जैकेट फिर इस कुर्ता पैज़ामा अच्छा भी मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से बनाए हुए रहते हैं और बहुत ही गुड क़्वालिटी के होते हैं।